ये एक नर्सरी का फोटो हैं जहाँ पर बहुत--

ये फोटो एक मच्छी मार्केट का है।

एक कबर्ड दिख रहा हैं जो खुला पड़ा हैं और एक--

और एक ट्रॉली दिख रही है जिसमें कुछ सामान पड़ा है।

ये फोटो एक मंदिर की हैं जहाँ बहुत सारे पुजारी बैठे हैं ।

यहां सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है।

ये फोटो किसी रेलवे स्टेशन का हैं जहाँ बहुत सारी खुर्ची पड़ी हैं ।

यहाँ पर बहुत सारी फ्रायर ब्रिकेट की गाड़ी खड़ी हैं एक छोटी सी गाड़ी खड़ी हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ हैं ।

एक पंखा है और दो लैंप भी लगे हुए हैं।